और अंदर एक आदमी बैठा है जिसने दो सफेद सल्ट पहन रखी है और बाहर एक बाइक खड़ी है जो कि थोड़ी सी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लोग खड़े हैं और बिल्डिंग भी है और हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और कुछ बाइक्स भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ मिट्टी बिखरी हुई --

पीला है और व्हाइट है और ए आसमान साफ दिखाई दे रहा है और इधर एक फारम दिखाई दे रहा है जो की हर-भरा है।

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनके हरे हैं और उनकी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर लाइटें पड़ रहीं है और आस-पास में बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक कांच के ऊपर पोस्टर भी लगे हुए हैं और एक मैट भी रखी हुई है।

जो की नीम के हैं और हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और बाहर एक खंभा लगा हुआ है जिसके ऊपर एक लाइट है।